ये एक राणसोली स्टेशन है।

यह एक पटरी का दृश्य है जहां पे एक पट--

यह एक शोरूम का दृश्य है जो कि ये हुंडाई का मॉडल है।